यहाँ पर मंदिर में बनी हुई सीढ़ी भी दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक मॉल दिखाई दे रहा है जिसमें लाइट लगी हुई है।

और यहाँ पर लगी हुई खिड़कियाँ भी दिखाई दे रही है।

और यहाँ पर कुछ व्यक्ति सब्जी लेते हुए दिखाई दे रहे है।

और यहाँ पर मंदिर में लगी हुई झंडी भी दिखाई दे रही है।